सामने एक गेट है। गेट में कृशन प्राइवेट आई_टी_आई किशन गंज बिहार अन्डर इंडिया फाउंडेशन --

और टेबल के ऊपर मे एक कंप्युटर रखे हुए हैं। सामने एक खिड़की है। खिड़की खुली हुई है। खिड़की लोहे के हैं। सामने बीच में एक पोल है।

और बहुत सारे तारे हैं। और इसमे छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं। और एक गेट है जो सीसे के गेट है। बगल में चार खिड़कियां है और जिसमें गोल्डन कलर के गेट के पास किए हुए हैं ।

सामने ऊँचे-ऊँचे दो मिनारे हैं मस्जिद है एक गुम्मद है और एक छोटा-सा गुम्मद है और दो खिड़कियां है।

इसमे बहुत सारे बने हुए ही उसमे गुंबज बने हुए है गुंबज के ऊपर एक झंडा लगे हुए है और उसके मे बहोत ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ है और उसके बगल मे भी ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ है बगल बगल मे बहोत सारे घर है।